जिन्होंने गर्म कपड़े पहने हुए हैं।

यहां पर हमें अलग अलग प्रकार की इमारतें दिखाई दे रही है।

हम इस भव भवन के काले रंग के गेट देख सकते हैं।

हमें यहां पर कई सारी ट्रॉफीज छोटी बड़ी हर प्रकार की ट्रॉफीज ।

जहां पर हम देख सकते हैं भोजनालय का नाम है कनवर भोजनालय।

हमें यहां पर कुछ साइकिल्स फ्री दिख रही हैं।

हमें चर्च की दीवारों के ऊपर अलग अलग तरह की पेंटिंग्स देखने को मिल रही है।

हम यहां पर एक गुलाब का पौधा भी देख सकते हैं।

सेंटर टेबल और उनके साथ चार चार चेयर लगी हुई दिखाई दे रही है।